यहाँ पर बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है उनमे पेड़ भी दिख रहे है इसमे गेट दिख रहा--

यह एक मंदिर है जिसमे बुद्ध भगवान की मूर्तिया रखी हुई है।

इसमें एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है उसमे एक गुलस्ता भी रखा हुआ है और उसमें रेलिंग लगी हुई है जीना भी लगा हुआ है।

और सामने वाली दुकान पर बहुत सारे स्टूल रखे हुए है इसमें सफेद रंग की लाइट दिखाई दे रही है।